मुझे यहां पर तीन बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक टनल दिखाई दे रहा है।

जिसका नाम सिमरोल टनल है मुझे यहां पर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर सूखी हुई चारा दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर तीन कुर्सी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर बहुत सारी मछली दिख रही है।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

मुझे यहां पर लंबे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

मुझे यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर हर पर्दा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर चाय वाले कप भी दिख रहे हैं।

मुझे यहां पर बहोत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

यह स्टेज राष्ट्र भारतीय पब्लिक स्कूल का है।

यहां पर एक सरस्वती माता बैठी हुई है।

यहां पर मुझे इंडियन फ्लैग दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे चार पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां पर एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर बहोत सारे बलून दिखाई दे रहे है।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

मुझे यहाँ पर एक पंखा दिखाई दे रहा हैं मुझे यहाँ पर बहोत सारी कुर्सी दिखाई दे रहीं हैं।

मुझे यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारे यात्री दिखाई दे रहे हैं।